ये घूमने की जगह नजर आ रही है जो काफी सुंदर लग रही है ये काफी सुंदर लग रही है यहाँ पे काफी पीछे झरने लगे हुए नजर आ रहे हैं इसके उपर पानी बहता हुआ नजर आ रहा है यहाँ इसके पीछे एक मकान दिख रहा है जो खंडहर सा लग रहा है।

दिख रहा है ये जिम काफी सूंदर नज़र आ रहा है ये जिम काफ़ी बड़ा दिख रहा है इसके नीचे की फर्श काफ़ी सुन्दर नज़र आ रही है इसके सामने बड़े-बड़े शीशे के उम्म शीशे लगे हुए है इसके आगे बड़े-बड़े मशीने लगे हुए है जहाँ पर लोग --

एक्सरसाइज वगैरा करने आते हैं यहाँ बहुत सारे बच्चे वगैरा आते हैं लड़के वगैरा आते हैं जो अपने शरीर की बॉडी की एक्सरसाइज करते हुए नज़र आते हैं जो यहाँ पर एक्सरसाइज करते हैं और काफ़ी अच्छा से --